ये पेट्रोल का ये देख रहे होंगे आप टैंकर ये भर रहा है पेट्रोल पंप पे--

यह पाइप और पानी फेक रहा है और यहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे आपको।

यहाँ खम टावर लगे हुए बहुत सारे और गड़िया भी दिख रही होगी आपको बहुत सारे यहाँ पर दिख--